ये थाली लगी हुई है और थाली में चावल है खीरा है नीबू है मिरचा है और प्याज है फिर दाल है और एक तरह की सब्जी है।

और ये जो दुकान है वो टाट की बनी हुई है और सारे जो फू सब्जी है वो नीचे है बोरे के ऊप --

मंदिर के अंदर राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है और बहुत सारे मालाओं से--

ये एक बच्चों का पार्क है चिल्ड्रन पार्क है और कुछ स्लाइडिंग दिख रहा हैं और अ एक बच्चा उसपे से स्लाइड खड़ा हुआ है।

और कुछ बिस्किट टूटे हुए हैं और बड़े बड़े चॉकलेट दिखाई दे रहे हैं इसमें--

एक कॉफी कप है एक किसी हाथ मे और इसके अंदर कॉफी भरी हुई है सामने एक पेड़ है।

अच्छा है इसको डेकोरेट किया गया है इसकी दिवारे जो है व्हाइट कलर की दिवारे है और टेबल शायद ब्लैक कलर का सनमाईका का टेबल लगा हुआ है बहुत ही--